यह जमुई रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनें आती है और यहाँ पर सभी जगहों की ट्रेन आसानी से मिल जाती है। लोग आते हैं यहाँ पे ट्रेन चढ़ के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं।

यह एक चिड़ियाघर है और यह चिड़िया घर बोहोत ही अच्छा है इस चिड़िया घर में बोहोत सारे जानवर रखे गए है और लोग यहां पे आते हैं जानवरों को देखने के लिए घूमने के लिए और यहां पे घूमने में बहुत अच्छा लगता है।

हवा भरी जाती है जिसमें की बच्चे लोग कूदते हैं।

यह एक डांस एकेडमी है और यहां पे बच्चों को डांस सिखाया जाता है और यहां एक डांस टीचर होती है जो कि बच्चों को अच्छे से डांस सिखाती है।